ऐसी दुकानें सभी जगह मिल जाती हैं। इसकी इसकी जरुरत पटरी प्रकार पेन वेन सब मिल जाते हैं।

यहाँ पर लोग सुबह-सुबह ऐसे बाहर खड़े हुए हैं। नाव में बैठे हुए है और भी बढ़िया --

इसमें मतलब बढ़िया सुविधा होती है। इसमे पैसे निकालने के लिए --

सभी लोग खेल रहे है। बढ़िया अच्छे तरीके से --

टहलने के वॉकिंग करने के लिए सुबह-सुबह टहलने के लिए --